यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के पास एक छोटी सी बाइक खड़ी हुई है।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

यहाँ पर बहुत सारा घोड़ा पड़ा हुआ है। पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है जिसके पास बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ दिख रहें हैं और कलर का व्यू दिखाई दे रहा।